सामने ही ब्लैक कलर का हमे यहां पर थोड़ा सा मिट्टी दिख रहा--

यहां पर हमें दिख रहा है महिंद्रा का शोरूम जो की यहां पर--

जो कि यहां पर पिंक कलर की मूर्ति के सामने बै--

पीछे जिम का समान पड़ा हुआ है फूट का कलर यहां दिखाई दे रहा है हमे--

इस पिक्चर में हमें मिठाई की शॉप दिखाई दे रही--

और साथ में ब्लैक कलर का गेट दिखाई दे रहा है।

खिड़कियां लगी हुई है जो की--

ग्राउंड फ्लोर में यहां पर हमें टाइल लगी हुई दिखाई दे रही है।

पीछे कुछ मेडिसीन रखी हुई दिख रही है।

यहां पर हमे कांच दिखाई दे रहा है।